और यहाँ पर एक फ्रिज भी रखा अंदर उसके अंदर कोल्ड्रिंक वगेरा रखे पानी की बॉटल रखी हुई है।

और डेकोरेट है कुछ रंग-बिरंगी--

एप्पल अम आम केला मतलब काफी सारे फल -फ्रूट रखे हुए है इस शॉप के अंदर --

नीचे छोटी -छोटी हरी- हरी घास लगी हुई है एक येलो --

नीचे जो जमीन है वो कच्ची है जो पूरी राइड हैं।

और उसके साइड मे पेड़ लगे हुए है काफी बड़े - बड़े साइडो

जो की काफी बड़ा समुन्द्र है और उसके --

और मतलब की लाइन लगा लाइन लगा के खड़े हुए मतलब की सामान लेने के लिए खड़े हुए है उस डेरी पे --

और बहुत सारी कुछ बोरियो में रखा है मतलब की हर जगह मतलब की सामान ही सामान रखा हुआ है जैसे की --